यहाँ से लोग बस पकड़ते हैं। हर जिले के बस यहाँ पे आती है। प्राइवेट सरकारी यहाँ से बहुत दूर दूर लोग यहाँ से पकड़ के लोग जाते हैं।